यह फोटो झरने का दिखाई दे रहा है।

किसी ने यहां पर फोटो खींचा है।

किसी ने यहा पर फोटो खीचा है।

यहाँ पर गाड़ियों की सर्विसिंग की जाती है।

कमरे के कावट की दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक होटल का है।

यह फोटो एक दुकान का है।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो कार सर्विसिंग की दुकान का दिखाई दे रहा है।

यह इस फोटो में मजदूर घर बना रहे हैं।

यह झरना बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक पर्यटन स्थल का दिखाई दे रहा है।

टी_वी रेडियो और बहोत सारी--